ये दृश शायद कोई नदी का है।

वो ब्लू कलर का दिख रहा है।

यह कोई मॉल का दृश्य है।

के आगे एक गाड़ी खड़ी हुई है।

और एक रेड कलर का गाड़ी है।

और इसमें रेड कलर का पैकेट टंगा हुआ है।

उसके बगल में एक ब्लैक कलर का कार और एक वाइट कलर का कार लगी हुई है।

और एक आदमी झोला ले के जा रहे हैं।

दृश्य शायद किसी शोरूम का है।

ये दृश कोई जिम का है।

पुश अप मारने वाला स्टील का है।

और उसके पीछे बहुत दूर में कुछ घर दिख रहे है।

और उसके बगल में एक घर बना हुआ है।

एक वाइट कलर का और एक ब्ल्यू कलर का है।

ये दृश्य कोई गाड़ी का है।

उसके बाहर में एक साइकिल और एक स्कूटी खड़ा हुआ है।

दृश्य शायद कोई पेट्रोल पंप का है।

जो ब्लू कलर का है।

दृश्य कोई मछली मंडी का है।

ये दृश्य कोई रोड का है।

इसमें बहुत सारे आदमी दिख रहे हैं एक आदमी बैग टांगे टंगे हुए हैं।

इस में एक कुर्सी दो टेबल हैं।

ये दृश्य कोई रोड का हैइसके दोनों साइड में फूल लगा हुआ हैफूल जो फुला हुआ वो रेड कलर का है रोड में एक बच्ची और एक आदमी पार हो रहे हैं।

दृश डाइन टेबल का है।

जो डेकोरेशन किया गया है।